कुर्सी हूँ कुर्सी रखी हुई हैं जिसमें वाइट कवर चढ़े हुए हैं।

एक जेंट्स की सस सीट का कलर लाल है। एक टेलीफ़ोन रखा हुआ है। एक टेबल है। जिस फा --

जिसमें जाने के लिए लोग लाइन में लगे हैं। ऊपर टीन है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। साइड में एक दुकान दिखाई दे रही --

यहाँ रेड कलर दिखाई दे रहा है और ये जो सारे पेड़ हैं ब्लैक एंड भाइट दिखाई दे रहे हैं और कहीं-कहीं --

ऊपर मैदान है और बहोत सारे पेड़ दूर-दूर पेड़ दिखाई दे रहे हैं और --

नदी दिख रही है और साइड में जंगल दिख पेड़ पौधे दिख रहे हैं। एक नाव है जिस पर दो लोग खड़े हुए हैं। नदी में सूरज --

और यहाँ पे कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जिसमें पौधे लगे हुए हैं। एक बाइक खड़ी है। साइड में एक नाला-सा है। ज --

बोहोत सी भीड़ दिखाई दे रही है। ऊपर आसमान है। आसमान --